देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक घर दिखाई दे रहा है उसके सामने आपको पेड़ भी दिखाई दे रहा है और इसके सामने आपको ग्राउन्‍ड्‌ दिखाई दे रहा होगा। इस --

के समय मनोरंजन के साधनों को बहोत उपयोग होता है आपके सामने एक आपको वर्कशॉप दिखाई दे रही है।

आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें आप लाइट लगा सकते हैं रंग बिरंगे लाइटों से यह आपके दरवाजे को चमकदार और खूबसूरत बना देगा जो कि आपके घर की भी शोभा बढ़ाता है ।

एनवेरोमेन्ट को देख सकते हैं यहाॅं पर गमलो में लगाए गए हैं जो कि यहाँ के वातावरण को सुखद और आंदमय बनाने के लिए बोहोत ही उपयोगी है।